इस छाया चित्र में एक बहुत दो बहुत बड़ी-बड़ी मेज दिख रही है वे मेज पे कुर्सियों पर कुछ व्यक्ति बैठे हुए है वे कुछ मेजों पर बड़े-बड़े कंप्यूटर रखे हुए हैं।

इस छायाचित्र में किसी पुरानी इतिहास की बहुत सारी आकृतियां दिख रही है।

यह छाया चित्र किसी होटल का है कुछ व्यक्ति होटल के बंद कमरे में बैठे हैं तथा कुछ टेबल और कुछ कुर्सियाँ रखी हुई हैं।

इस छाया चित्र में एक बहुत बड़ी भंडार दिख रहा है।

छाया चित्र मे बहुत सारे पेढ़ दिख रहे है और एक बडी पत्थर की चट्टान दिख रही है उसके उपर कुछ अन्य चट्टानें रखी हुई हैं ।

कुछ हरे-भरे पौधे निकल रहे हैं तथा कुछ सूखी घांस भी है व बड़ी-बड़ी इंटें एक के उपर एक रखी हुई है।